एक खाली मैदान में एक टेंपू खड़ा हुआ है काले कलर का टेंपू है नीचे हरी-हरी घास है।

कुछ कुर्सियाँ दिखाई दे रही है जिस पे जो गद्दी लगी हुई है ओ नीले रंग की है।

एक बंद दरवा बंद दरवाजा दिखाई दे रहा है जो लोहे का प्रतीत होता है।

--लगी हुई है कुछ अ औंन के डिब्बे लगे हुए है अ कुछ अ डर्मिकूल --

खाली सीमेंट से बनी हुई है और उसके उतार चारों तरफ पेड़ है पौधे है।

एक खाली सड़क दिखाई दे रही है बहुत साफ़ सूत्री सड़क दिखाई दे रही है।

अम्म उसमे बीच में पानी भरा हुआ है उसमे तीन चार छेद है जिस मे पानी भरा हुआ--

बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है और खुला आसमान है।

अ घर के ऊपर एक सिखर सा दिखाई दे रहा है उसके ऊपर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने इस्क्रीन में पिक्चर चल रही है जिसमें एक अ आदमी बैठा है दो आदमी बैठे हैं उसके बगल में--

क सफ़ेद रंग की कार है अ-- जिस जो होंडा की कार है उसके नीचे पीले कलर में--